यहाँ एक जगह है जहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहै है और यह जगह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है और यहाँ पर कुछ लोग भी दिखाई दे रह हैं।

और यहाँ पर बहुत सारे एंगल भी दिखाई दे रहे हैं और यह जगह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है और ये सफ़ेद कलर में दिखाई दे रही है।